यह एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जगह है जो बरेली में है।

यह एक नर्सिंग होम का दृश्य है इसका नाम सेहत नर्सिंग होम है यहां पे जो डॉक्टर है उनका नाम है डॉक्टर जमालुद्दीन।